यह तस्वीर एक प्लेटफार्म की है।

रेल की पटरियां भी प्लेटफार्म से सटी हुई हैं।

एक बैनर लगा हुआ है।

इस तस्वीर में एक मंडप है।

बालकनियों को ग्रीन और रेड लाइट से सजाया गया है।

ऊंचा-ऊंचा शीशा लगा हुआ है।

किताबों और फाइलों को सजाकर डिस्प्ले में रखा गया है।

दो लड़कियां एक स्टेज पे खड़ी है।

नीचे योगा मैट लगे हुए हैं।

कुछ पौधे भी लगे हुए हैं।

आंगन में एक पाइप के सहारे राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है।

पत्थर पे कुछ प्लास्टिक फेंके हुए हैं।

एक बड़ा सा गमला रखा है।

बहुत सारी लाइटों को छत पे लगाया गया है।

इसमें रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई है।

पिंक कलर से पेंट किया हुआ बिल्डिंग है।

गैस से सिलेंडर भी लगा हुआ है।

इस तस्वीर में एक सफेद तंबू गढ़ा हुआ है।

दी गई तस्वीर किसी गाड़ी के सर्विस सेंटर का है।

यह तस्वीर एक बिल्डिंग की है।

उसके बाहर एक मद्रास रेस्टोरेंट का बोर्ड लगा है।

यहां बहोत सारी महिलाएं इकट्ठा है।

पूजा के स्थान के बगल में एक खेत भी है।

तस्वीर में एक बिल्डिंग है।

नदी के किनारे ब्रिज भी बना हुआ है।

पे उसने चश्मा भी लगा रखा है।

जूते चप्पल की दुकान की है।

जूते चप्पल को सजा कर रखा गया है।